यह जवाहर नवोदय विद्यायल साहेबगंज में है। जो स्टेडियम रोड के निकट और यह विद्यायल बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है।

ये पिलर लगाने के लिए गड्डा किया गया है जमीन से मट्टी कोढ़ कर इनमे गड्डा किया गया है। जिससे की इसमें पिलर खड़ा--

यहां पे बहुत ही सुंदर से सजाये गए होटल बहुत ही ख़ूबसूरत लग रहे है। चारो तरफ से। और यहां पे बहुत ही अच्छा खाने का व्यवस्था किया जाता है।

और यह बहुत ही सुंदर लग रहे है।

ये किसी घर के ढलाई करने का काम चल रहा है।

यहाँ पर सारी सूट सलवार भी मिलते है और यह बहुत ही सुंदर दुकान है।

और नीचे में टाइल्स का डिजाईन भी बहुत सुंदर लग रहा है।